दो शॉप्स नजर आ रही हैं एक पे एस_बी_आई बैंक का बोर्ड भी लगा है।

एक बिजली का बड़ा खंभा नजर आ रहा है।

एक दीवार नजर आ रही है आसमान सफेद नजर आ रहा है।

जो कि लाल कलर किया गया है। एक ए_सी कंप्रेसर भी नजर आ रहा है।

और एक नजर आ रहा है जिसके ऊपर के नजर आ रहा--

और वहां पे मुझे छोटे छोटे लाइट दिखाई दे रही है।

और कुछ पुरुष भी खडे नजर आ रहे हैं। एक ने हरे रंग की शर्ट डाली है और एक ने ब्राउन कलर की जैकेट डाली है।

और वहां पर मुझे बहुत सारी लाइटें नजर आ रही है।

मुझे एक पार्क सा नजर आ रहा है जिसके बीच एक डस्टबिन भी नजर आ रहा हैं जो कि हरे रंग का है।

पेड़ हैं और वहां पर एक पेड़ नजर आ रहे हैं और एक पोस्टर भी लगा है और पोस्ट के ऊपर लिखा है।

और पानी की टंकी है नजर आ रही है और वहां पे बड़े बड़े पेड़ नजर आ रही है।